यह पर एक बाइक भी दिखाई दे रहा है।

और मुझे यहां पर एक रूम दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारा कुर्सी भी दिखाई दे रहा है एक पेंटिंग भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक इंसान दिखाई दे रहा है।

कुछ पोर्स भी दिखाई दे रहा है।

और कुछ छीती और तांब भी दिखाई दे रहा है।

और इंसान भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक सोफा भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर कुर्सी भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे एक वाइट डैशबोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे साइड में ट्रेनिंग एकेडमी का साइन भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक चिड़िया दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक केला गच्ची भी दिखाई दे रहा है।

बाहर भी दिखाई दे रहा है बादल भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर दो दुकान भी दिखाई दे रहा है।

मुझे एक नेट भी दिखाई दे रहा है।

और एक रेड कार्पेड भी दिखायी दे रहा है।

यहां पर मुझे एक दुकान दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे लाल रंग का कुर्सी भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक बहुत बड़ा तेल दिखाई दे रहा है जहां पे सूखा सूखा ग्रास दिखाई दे रहा है।

ग्राउंड के पीछे कुछ सिटी या टाऊन के जैसा दिखाई दे रहा है।

यहां मे एक बहुत बड़ा मूर्ति दिखाई दे रहा है।

यहा मे टेबल में पोन दिखाई दे रहा है।